यह एक बहुत बड़ा हॉल है इस हॉल में ह बहुत सारी रिक्शाये खड़ी हुई हैं और हर रिक्शा अलग-अलग कलर की यहां पर खड़ी हुई है।